यह सूचना मंदिर है मोचन मंदिर है देखने में बहुत बढ़िया लगता है अगल-बगल में गाड़ी भी खड़ा है और उधर रेड़ी भी खड़ा है।